यह एक दृश्य दिखने मे बहुत ही बेहतरीन सुन्दर सा प्रदर्शित करता है।

पानी भरा हुआ इसमें स्विमिंग पूल की तरह नज़र आ --

यह एक डीजल टैंक है। जिसकी छतरी में लाइटें जलती हुई बेहतरीन नजर आ रही है। इसकी यहाँ पर गाडियों मे डीजल भी डाला जा रहा है। ट्रक भी खड़ा है।

यह एक बेहतरीन खूबसूरत हाथी रंगों एवं कलरों से परिपूर्ण बनाया गया है।